अच्छे डिजाइनों में लगे हुए हैं अच्छे लग रहे हैं यहां का देखो देखने लायक--

हेलो गाइस ये देखिए यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है वह इसके आसपास बहुत हरे हरे--

हेलो गाइस ये देखिए आप यहां पर कोई पार्टी लग रही है हमें जहां पर अच्छे से मना--

अच्छा लग रहा हैं वो देखने लायक हैं।

जहां की एक हमें कच्चा पेड़ भी दिखाई दे रहा है टूटा हुआ और हरी भरी हरियाली भी दिखाई दे रही है पेड़ पौधों के साथ।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

यहां पर क्लाइंट खाना खाते हैं और ये देखिए सभी यहां पर सभी चीजे मिलती हैं चाय वगैरा फैन नमकीन बिस्कुट --

और ये देखिए यहां पर गाजर लीची--